यह जगह बहुत अच्छा है यहां एक प्रवेश द्वार बने हुए है दोनो तरफ दो गार्ड रखे गए हैं । यह जगह बहुत लंबा-चौड़ा जगह है बगल मे बहुत सारे पेड़-पौधे दिखाई देते है।

यह कोई गेस्ट हाउस है। यह सरकारी भवन लगती है। यह गेस्ट हाउस के बगल में बहुत बड़ा कंपाउंड --